और पेड़ भी लगे हुए हैं पास में एक छोटा सा घर जैसा बना जो कि हरे रंग का है और उसके ऊपर लाल रंग की छत बनी हुई है।

वहां पर एक नीले रंग की मेज है और काले रंग की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और वहां पर आस पास बहोत बड़े बड़े हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

वहाँ पर काँच की खिड़कियां भी हैं तीन और साइड में पोस्टर भी लगा है जिस पे लिखा हुआ है फिनो पेमेंट्स बैंक और नीचे लिखा है माइक्रो --

वहां पर खिड़की गेट और बहुत सारी रेलिंग भी लगी है जो कि सफेद रंग की है और वहां बहुत सुंदर लग रहा है।

वहां पर बहोत सारे औजार भी पड़े हुए हैं और वह गाड़ी सही करने के लिए खड़े हैं।

वहां पर पास में दो पहिया गाड़ियां भी खड़ी हुईं हैं और एक पीले रंग का ऑटो भी खड़ा हुआ है।

यहां पर गुब्बारों से सजावट हो रखी है हल्के गुलाबी और सफेद रंग के।

यह एक दुकान है जो कि नीले और सफेद रंग की है वहां दो पंखे लगे हुए है।

इतना सुंदर पेंट हो रखा है दीवाल पे गुलाबी ऑरेंज और नीले रंग का--

वहां एक आदमी है जिन्हें सफेद चंग की शर्ट पहनी है और नीले रंग की पैंट पहनी है।

और वहां पर ऊपर टीन भी लगी है। नीले रंग के स्टील के पाइप भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहुत सुंदर सजावट हो रखी है गुलाबी सफेद और ऑरेंज रंग के पर्दों से यहां पर बहुत सारी सुंदर फूलों की सजावट है।

यह बहुत सुंदर लाल रंग का गेस्ट हाउस है जो कि पूरा लाल हो रखा है वहां पर लाल रंग की लाइट जल रही है।

वहां पर दीवाल पर बहुत सुंदर काले रंग से पेंटिंग बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है अटलांटिस ।

यह एक बहुत बड़ा टावर है इसके अंदर नेटवर्क आते हैं और बहुत सारे तार निकले हैं जो कि काले लाल और हरे रंग के हैं।

और वहां पर बहोत सारे खाचों वाली अलमारी बनी हुई है जो कि क्रीम रंग कि है।

यहां पर बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं जो की सफेद रंग की है।